व्हाइट कलर की टीना लगी हुई है।

बहोत सारे झंडे गड़े हुए हैं।

व्हाइट कलर की लाइट भी लगी हुई है।

इस रूम के पास दो पुरुष खड़े हुए हैं।

रेड ब्लू व्हाईट हर तरह की लाइट जल रही है।

और बहुत बड़े छोटे पत्थर हैं।

और वृक्ष बहोत सारे लगे हुए हैं।

जहां एक बड़ा सा वृक्ष सुख गया है।

जो ग्रीन कलर की रस्सी से बंधी हुई है।

ब्राउन कलर की गेट लगी हुई है।

और बहोत सारे कुर्सियां रखी हुई है।

बहोत सारी प्लांट लगे हुए हैं।